कुछ चेयर्स भी डले हुई है।

सामने की तरफ टेंट लगा हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर--

है। यह एक स्टेशनरी शॉप है।